डेस्क के ऊपर एक मॉनिटर भी रखा हुआ है।

यहां अलग अलग प्रकार की गोटी है जिसमें से कुछ लाल तो कुछ काली कुछ सफेद --

खिड़की के ऊपर पर्दा भी लगाया गया है।

ऊपर आसमान में काले बदल छाए हुए हैं।

इसके ठीक नीचे विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई गई है।

पीछे एक पोस्टर लगी है जिसमें लिखा हुआ है श्रेष्ठ नेत्रा चिकित्सालय ।

सामने रास्ते पर कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां फ्रिज दिखाई दे रही है फ्रिज के भीतर बहोत सारे सामान मौजूद है।

बहोत सारे लोग मछली बेच रहे हैं।

कुछ दुकानदार मछली को काटते हुए नजर आ रहे हैं उसके ठीक सामने बहुत सारे कस्टमर भी लगे हुए हैं मछली लेने के लिए।

मॉल का रंग सफेद तथा ग्रीन रंग से रंगा गया है।

के पीछे एक बड़ा सा पोस्टर है जिसपर श्रेष्ठ नेत्र चिकित्सालय लिखा हुआ है।

यहां एक स्ट्रीट लाइट भी नजर आ रही है और खंभे पर बहुत सारे तार भी लगे हुए हैं।

पीछे आसमान बिल्कुल साफ है।

सामने एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जिसमें संगीत इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है।

अंदर बहुत सारे सामान है जैसे फ्रिज कूलर है रेफ्रिजरेटर सामने टेलीविजन और एल_ई_डी भी लगी हुई है।

इस दुकान के ठीक आगे एक बुलेट एक स्कूटी और एक बाइक पार्क की हुई है।

काउंटर के ऊपर कुछ प्लेटें दिखाई दे रही है उसके ठीक सामने मग के ऊपर छोटे छोटे चम्मच नजर आ रहे हैं यहां एक पेटीएम का क्यू_आर भी है।

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं कुछ स्टील लाइट भी दिख रही हैं और पीछे बादल भी है।

इसमें टेनिस प्रो मल्टी जिम एंड स्पा लिखा हुआ है।

वे फोटो को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं।

बड़ा सा बिल्डिंग और उसके ठीक सामने पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

पीछे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं और आसमान बिल्कुल साफ है।